इक्लिप्स की प्रोग्रामिंग विशेषताओं के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे इक्लिप्स की यूजर अनुकूल प्रोग्रामिंग विशेषताएँ
इस ट्यूटोरियल में हम उपयोग कर रहे हैं उबंटु 1110 जेडीके 16 और इक्लिप्स 370 इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपके सिस्टम पर इक्लिप्स संस्थापित होना चाहिए
आपको पता होना चाहिए कि इक्लिप्स में एक साधारण जावा प्रोग्राम कैसे लिखें
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए हमारी दिखाई गयी वेबसाइट पर जाएँ
इक्लिप्स इडे बहुत सारी यूजर अनुकूल विशेषताओं का समर्थन करता है जैसे ऑटो कम्प्लीशन सिंटेक्स हाइलाइटिंग एरर डायलॉग बॉक्स और शॉर्टकट कीज़ हम इन सभी विशेषताओं को विस्तार से देखेंगे
मैंने फीचर्स नामक एक क्लास बना दिया है और मेन मेथड जोड दिया है
हम पहले इक्लिप्स में ऑटो कम्प्लीशन विशेषता देखेंगे
मेन मेथड में एक ओपनिंग ब्रेस टाइप करें और एंटर करें
हम देख सकते हैं कि यह समरुपी क्लोजिंग ब्रेसेस स्वतः ही सेट करता है और इंडेंटेशन के साथ कर्सर को रखता है
यह प्रत्येक विशेषता को पूरा करता है एक साथ काम करता है
उदाहरणस्वरुप पेरेंथीसेस ओपन पेरेंथीसेस टाइप करें
हम देख सकते हैं कि हमने केवल ओपन पेरेंथीसेस टाइप किया और इक्लिप्स ने स्वयं ही क्लोजिंग पेरेंथीसेस जोड दिया है
यह भी ध्यान दें कि यदि हम क्लोजिंग पैरेंथेसिस टाइप करने का अभ्यास करते हैं तो यह अतिरिक्त क्लोजिंग पैरेंथेसिस न जुड़ने का भी ध्यान रखता है
अब मैं क्लोजिंग पैरेंथेसिस टाइप कर रहा हूँ और ध्यान दें कि कर्सर केवल बाईं ओर मूव होता है और अतिरिक्त पैरेंथेसिस नहीं जुड़ता है
यह डबल कोट्स के साथ भी उसी तरह से कार्य करता है
ओपनिंग कोट्स टाइप करें और यह स्वतः ही कोट्स को क्लोज कर देता है
यदि हम क्लोजिंग कोट्स टाइप करने का अभ्यास भी कर रहे हैं यह अतिरिक्त कोट न जोडकर इसका ध्यान रखता है
मैं कोट्स टाइप करना जानता हूँ और देखता हूँ कि कर्सर दाईं ओर मूव होता है किंतु कोई अतिरिक्त कोट्स नहीं जुड़ता है
ऑटो कम्प्लीशन एक बहुमुखी विशेषता है और कोड की संरचना को बनाए रखने में काफी मदद करता है
और टाइपिंग एरर्स से भी बचाता है जैसे क्लोजिंग ब्रैसेस भूलना क्लोजिंग पैरेनथीसेस भूलना और क्लोजिंग कोट्स भूलना
अगली प्रोग्रामिंग विशेषता जिसे हम देखेंगे वह सजेशन सजेशन है
उन सभी को हटाएँ जिसे हमने टाइप किया है
हम शब्द हेलो को प्रिंट करने के लिए आउटपुट स्टेटमेंट टाइप करेंगे सिस्टम डॉट ध्यान दें कि इक्लिप्स ड्रॉप डाउन सूची प्रदर्शित करता है
सूची में सुझाव होते हैं जैसे एर्र inoutकंसोल समाप्ति की सभी संभवताएँ
आउट पर स्क्रोल डाउन करें और एंटर दबाएँ
फिर से डॉट टाइप करें
अब इक्लिप्स आउट मॉड्यूल से सुझाव प्रदान करेगा
println पर स्क्रोल डाउन करें और एंटर दबाएँ
अब पैरेंथेसिस के अंदर कोट्स में हेलो टाइप करें

अगली विशेषताएँ जिसे हम देखेंगे वह है सिंटेक्स हाइलाइटिंग विशेषता
ध्यान दें कि कीवर्ड पब्लिक क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड सभी भिन्न रंग में है
और यह भी ध्यान दें कि हेलो शब्द नीले रंग में है जो दर्शा रहा है कि यह स्ट्रिंग है
यह सिंटेक्स हाइलाइटिंग विशेषता हमें कीवर्डस और कोड के भिन्न भागों के मध्य अंतर जानने में मदद करती है
इक्लिप्स भी प्रोग्रामर को एरर्स ज्ञात करने में मदद करता है
प्रोग्राम में एरर बाईं मार्जिन पर रेड क्रॉस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाती है
इस प्रोग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ एक एरर है और माउस एरर पर घूमता है
हम देख सकते हैं कि एरर दर्शाती हैः सेमी कॉलन नहीं है और एरर को ठीक करने के लिए समाधान दिखाया गया है
यदि हम एरर को फिक्स किये बिना रन करते हैं तो राइट क्लिक करें रुन एएस जावा एप्लिकेशन चुनें
हमें एक एरर डाइलॉग बॉक्स दिखता है जो दर्शाता है कि यहाँ एक एरर है जो आगे बढ़ने और न बढ़ने के लिए पूछता है
अभी के लिए आगे बढें
हम देखते हैं कि यहाँ आउटपुट दर्शा रहा है कि यहाँ एक एरर है और जब हम प्रॉब्लम कंसोल पर जाते हैं सभी प्रॉब्लम संभव समाधान के साथ सूचीबद्ध होते हैं
अतः सेमीकॉलन जोड़कर एरर को हल करें
सेव करने के लिए Ctrl एस दबाएँ
इक्लिप्स की अगली प्रोग्रामर अनुकूल विशेषता शॉर्टकट कीज़ है
किसी भी प्रोग्राम में सामान्य शॉर्टकट कीज़ सेव करने के लिए CtrlS और ओपन करने के लिए CtrlO हैं
इक्लिप्स में इस तरह के कई सामान्य उपयोगित फंक्शन्स के लिए शॉर्टकट कीज़ हैं
कंट्रोल फ़11 कोड को रन करने के लिए शॉर्टकट है
अब इसका अभ्यास करें
Ctrl को पकड कर रखें और फ़11 दबाएँ तथा हम देखते हैं कि कोड रन होता है और आउटपुट हेलो प्रिंट होता है
अन्य ऑप्शन्स के लिए शॉर्टकट कीज़ मेन्यू में जाकर पता की जा सकती हैं
रुन पर क्लिक करें
और ध्यान दें कि ऑप्शन के राइट में यहाँ शॉर्टकट दिया गया है
अतः देबुग के लिए शॉर्टकट की फ़11 है
यह इक्लिप्स की प्रोग्रामिंग विशेषताओं की एक छोटी किंतु अधिकतर उपयोगित सूची है
हम अधिक विशेषताओं के बारे में आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि इक्लिप्स की प्रोग्रामिंग विशेषताओं का उपयोग कैसे करें जैसे ऑटो कम्प्लीशन सिंटेक्स हाइलाइटिंग एरर डायलॉग बॉक्स और शॉर्टकट कीज़ एक नियत कार्य के रुप में क्लास के साथ एक सामान्य प्रोग्राम लिखें जो हेलो प्रिंट करे
साथ ही इक्लिप्स की सभी प्रोग्रामिंग विशेषताओं को लागू करें
इसके फंक्शन्स पर ध्यान दें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं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
अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
धन्यवाद